यह एक बहोत बड़ी नदी है।

यह एक कोचिंग क्लास है। यहाँ पे मैथ जी.के. इंग्लिश बायोलॉजी केमिस्ट्री की क्लास होती है। यहाँ पे बहुत सारे लड़के-लड़की कोचिंग करने के लिये इस क्लास में आते हैं।

यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं ट्रक ऑटो मैजिक और यहाँ पे इस जगह पे रोड साइड में बहुत ही हरे-भरे पेड़-पौधे लगाये गये हैं।

बाल काटते है यह सलून में बहुत सारे लोग बाल कटाने के लिए आये हुए है सैलून के बहार काफी सारे बलून के गेट बनाये गये है बहुत सारे लोग --